भगवान एक बड़ा सा प पथर वाऊपर भगवान के मूर्ति बुध भगवान जी बुध भगवान त्प्य्सा करत वा।

ऊपर छोटा छोटा ओर सारा मूर्ति भी बनावल बाटे ऊपर ओकरा बगल में एक दरवजा भी बाटे।

और उ जाहज पे बहुत सारा लोग भी खाड़ा बाटे।

कलर के बड़का चुई घर बाटे ओकरा नीचे लाल कलर के चप्पल जूता के दुकान बाटे।

बहुत ही पुराना राजा महाराजा के महल बाटे दू नो ओर से ओकर बीच मे से एगो रास्ता जाले बाहर निकलेला।

वो आदमी के हाथ में कुछ हरा बोतल के डिब्बा काटल बाटे ओमे कुछ बाटे।

यह खूब सुदंर सेलून बा सेलून एक पोस्टर लागल बा बाल बनावे के अलग--

और दुल्हन सब सजावे के अलग और आँख सब पे ये मेकअप लगावे के अलग ओकरा आगे एगो सोफा भी खरल बाटे ऊपर सोफा पे के आगे टेबुल वा बहुत अच्छे से सजा--

ओकरा अगल बगल में भी हरा भरा घास लगाले बाटे एगो रास्ता में एक लड़की एक लड़का खड़ा एगो लईका खड़ल बाटे ओकरा आगे रास्ते में एगो हर वा।